व्हाइट और गोल्डन कलर का है दूल्हे ने भी वैसे शेरवानी पहन रखी है गोल्डन और रेड कलर की इसका दोस्त भी है जोकि साथ में खड़ा है।

इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि ये किसी स्थल का है जो कि बाधवासी से है।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

और हम देख सकते हैं एक मॉनिटर है चारों दिखाई दे रहे हैं जो एब्सेंट होगा एक जो कम होगा --

और बहोत सारे वायरे जोकि इस बेक के साइड से आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक्ट और वाईफाई के हो सकते हैं।

जो कि तीन चार कुत्ते अभी सामने दिखाई दे रहे हैं और तीन चार कुर्सियां हैं जो कि दिखाई दे रही --

और ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी है पीछे देख सकते हैं कि गमले की शॉप है ये।

बनी हुई है के लिए और इधर साइड साइड में एक में खड़ा है जो कि और देख सकते हैं रेल की पटरियों को भी।

इस पिक्चर में देख सकते है कि ये एक पार्क का चित्र है सामने बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं।

यह एक ऐसी पिक्चर है जिसमें दीवार के पीछे बहुत सारे फोटोस लगाए गए हैं।

ये एक हीरो के बाइक का शोरूम है जो की देख सकते है।

इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक शाप का पिक्चर है जहां पे तीन मशीनें रखी हैं प्रिंट की।

नीचे भी कैमरा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जैसे कि इसके नीचे भी दिखाई रही है और पानी भरा हुआ भी है चिड़ियों के लिए।

एक है जो पुलिस के साथ मे खड़ी दिखाई दे रही है एक महिला बैठी है जोकि हाथ जोड़ के बैठी है।

और आप देख सकते है की सामने एक ए_सी भी दिखाई दे रही हैं उसके पास एक पंखा भी दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में देख सकते हैं कि ये किसी कलर की पिक्चर है इसमें की राइट साइड में बहुत सारे मकान बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार --

जोकि आया है पीछे देख सकते है बोहोत सारे लोग बैठे है और इस पिक्चर मे बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।